और इसमें एक झोंटा लगा हुआ है जिसमें बच्चा झूल रहा है।

एक तिरंगा झंडा लेये एक लड़का खड़ा है उसके पास।

बहोत अच्छी सजावट की गई है।

और बहुत बड़ी इमारत है जिसमें कंच के शीशे लगे हुए हैं।

एक लैपटॉप रखा हुआ है और एक काउन्टर एक माउस --

और पीछे बॉक्सेस में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।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

और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।

एक बस स्टैंड है जिसमें एक व्यक्ति साईकिल चलाते हुए जा रहा है मास्क लगा कर।

सौर ऊर्जा प्लेट के पास एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है जिसपर झंडा लगा है।